यहाँ पर एक सामने गेट बना हुआ है जो की बहुत ही अच्छा दिख रहा है।

आप दुकान है एक है और बैठे के लिए कुर्सियां भी है बहुत सारे लोग इस--

और इसमें एक आदमी भी खड़ा है और इस बुक की दुकान के आसपास भी बहुत सारे दुकान है जो की सेटर लगा हुआ है।

काफी छोटी-छोटी घास है जो की हरे-भरे दिख रहे है और इसमें इसमें दो ईमारत जैसा कुछ खड़ा है और इसमें ही हिरन का प्रतिमा बनाया--